एक बड़ा सा पार्क है पार्क के बीच में छोटा सा मिट्टी का ग्राउंड बना है।

बाहर दो बैनर लगे हुए हैं कुछ लोग सड़क में खड़े हैं सड़क में ऑटो रिक्शा और साइकिल वाले जा रहे हैं।

मंदिर के बीचोंबीच दुर्गा माता की मूर्ति लगी हुई है।

छत में पंखे हैं एक बड़ी सी घंटी टंगी हुई है फर्श में एक चद्दर पड़ी हुई है।

गाड़ी के सामने घोड़े बने हुए हैं गाड़ी को फूलों से सजाया गया है।

पीछे बड़ा सा पहड़ है ब बड़े-बड़े मकान दिखाई दे रहे हैं एक बड़ा सा टावर है।

कमरे में एक बड़ी सी टेबल है बैठने के लिए कुर्सियां हैं।

छत पे सेंटर एसी है छत में लाइटें जड़ रही हैं दरवाजे के सामने एक बड़ा सा पोस्टर है।

कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं सामने बड़ा सा शीशा है।

शीशे में बच्चों की छाया दिखाई दे रही है छत पे लाइटें हैं।

कमरे के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं सामने एक आदमी खड़ा है।

बगल की दीवार में एक बड़ा सा स्पीकर है कुछ पोस्टर लगे हैं।

नदी में एक हाथी खड़ा है हाथी के ऊपर एक आदमी हाथ पे डंडा लिए खड़ा है।

टेबल के ऊपर कुछ कागज हैं एक लड़का एक लड़की इनमें काम कर रहे हैं बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी है।

एक बड़ा सा पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप में दो आधा है।

दुकान के ऊपर बोर्ड है जिसमें बालधाड़ी लिखा है।

दुकान के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी है सीढ़ियों में काले रंग का पत्थर लगा है।

कमरे में एक आदमी कुर्सी में बैठा है उसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े हैं।

गोलगप्पे का ठेला है ठेले में एक छोटा सा काउंटर बना है।

जिसको अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है दो हिस्सों में गोलगप्पे रखे हैं।

मिठाई की दुकान है सामने बड़े-बड़े फ्रिज रखे हैं फ्रिज के अंदर अलग-अलग प्रकार की मिठाई है फ्रिज के सामने एक महिला सुली है।

नाव के ऊपर कुछ सामान रखा है नदी के सामने बड़े-बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं नदी के नीचे कुछ पच्छर दिख रहे हैं।

जिम में लाल और नीले रंग की मैट बिछी है मैट के ऊपर डंबल रखे हुए हैं।

एक आदमी के हाथ में काले रंग की तार है नीचे सीढ़ी बनी हुई है।

एक बड़ी सी दुकान दुकान के अंदर बहुत सारी कुर्सी रखी हैं।

दुकान में लाइट चल रही है बाहर एक बोर्ड लगा है जिसमें नेचर कैंडी लिखा है रात का समय है।

मान में दो सीढ़ियां बनी है सीढ़ियों के आगे एक छोटी नीले रंग की कार है।

सड़क के किनारे कुछ दुकान है एक दुकान का शटर बंद है दूसरी का खुला है।

दुकान के अंदर रैक है रैक में अलग-अलग सामान रखा है।

बीच में एक माली है जिसके अंदर सेरेलेक के डिब्बे हैं।

सड़क में एक जुलूस निकल रहा है जिसमें महिला और आदमी शामिल है।

इमारत की छत बिल्कुल तरी पूरी तरीके से टूट चुकी है एक छोटी सी घास इमारत के सामने उगी हुई है।

दीवार में रैक बना हुआ है रैक में अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग सामान रखा है।

ऊपर के हिस्से में कॉलिंग नीचे डिटॉल के सामान उसके नीचे।

अंदर कुछ लोग बैठे हैं बैठने के लिए कुर्सी है छत में गुब्बारे लगे हैं ।

दुकान का दरवाजा कांच का बना हुआ है शटर ऊपर उठा है दुकान के बाहर एक बड़ा सा पीले रंग का बोर्ड है।

दीवार पे एक बड़ा सा पोस्टर है जिसके ऊपर लाइट से कुछ लिखा है दूसरी तरफ बड़े-बड़े पोस्टर हैं।

कमरे के अंदर एक बड़ी सी टेबल है टेबल के ऊपर कंप्यूटर रखे हुए हैं।

कोने में एक और टेबल है जिसके ऊपर प्रिंटर रखा है सामने दीवार पे इंडियन का एक बड़ा सा पोस्टर लगा है।

एक बड़ा सा क्रिकेट का ग्राउंड है जिसमें कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं।

टेबल के ऊपर कैलकुलेटर पेन कॉपी और कैची रखी है एक बैठने के लिए कुर्सी है।

गद्दियां रखी हुई हैं चढ़ने के लिए एक लोहे की सीढ़ी बनी है।

सामने भी कुछ सफेद रंग के कपड़ों को रोल करके लोहे के रोड में लगाया गया है।

बगल से एक सीढ़ी जा रही है सीढ़ी के ऊपर भी कुछ सामान रखा गया है नीचे गत्ते के डिब्बे रखे हैं।

टेबल में कुछ महिलाएं कपड़े खरीद रही हैं सामने एक आदमी खड़ा है।

दुकान में रैक बने हैं रैक में बहुत सारे कपड़े रखे हैं ऊपर एक ए_सी लगा है।

टेबल में गाड़ी ठीक करने के औजार पड़े हैं सामने एक नीले रंग का डिब्बा है।

टेबल के बगल में एक कुर्सी और एक सोफे रखा है।

दीवार से लगा के रैक बनाए गए हैं रैकों में सामान रखा है।

कुछ आदमी आस पास खड़े हुए है लोगो ने मास्क पहने है।

पीछे एक हरा पेड़ है आकाश में चांद निकला हुआ है।

दूसरी तरफ सड़क में एक कार और ट्रक जा रहा है सड़क के किनारे बड़े-बड़े पेड़ हैं।